एक तरफ एक चैर नज़र आ रही है जो की वाइट कलर की नजर आ रही है एक दो तीन टेबल नजर आ रही है जो कि खाली नजर आ रही है।

दो तरफ मुझे एक लड़का नजर आ रहा है जिसके सामने एक टेबल नजर आ रही है।

उसके पास मुझे काफ़ी सारी सब्जी का झूला नज़र आ रहा है सब्जी मार्केट नजर आ रहे है मुझे एक लड़का भी नज़र आ रहा है जो कि खड़े नज़र आ रहा है इसके साथ मुझे एक टोकरी भी नजर आ रही है।